स्कूल है स्कूल की जगह यहा पे बच्चे बैठे हुए है और बच्चे फेविकोल से कुछ चिपका रहे है कटिंग करके और ये बच्चे काफी मेहनत कर रहे है बच्चे--

एक आदमी और एक औरत खड़े हुए है नया ऑटो लेके आउट उस पे लिखा है सार्थक और उस ऑटो का नाम सामने लिखा है और एक गेट बना है गेट के बहार ही ऑटो खड़ा है।

तीन मुर्तिया लगे हुई यहाँ पे मंदिर में और काफी भीड़ भाड़ है यहाँ पे मंदीर काफी सजा दिया है लोगों ने बहुत अच्छा लग रहा लाइन से लोग आरहे हैं।

और वो अंदर ले जाता है फिर वो रखता है वहां से और कहीं लगे है वह पे निकल रहे है और रिक्शा कर--

छतरी पकड़ क लोग चल रहे है काफ़ी बर्फ गिरी हुई है काफ़ी लोग कुछ पेहन हुआ है जैकेट वगेर है काफी सर्दी का टाइम है यहाँ पे।

कुछ फैला दिया गया है जमीन पे और काफी यहाँ सारी बोरि भी रखी है कुछ मजदुर भी यहाँ खड़े--